बोहोत ही बड़ा सब्जी मंडी लग रहा है और इधर एक आदमी शर्ट वृत पेहेने वाद्य में चाय को हाथ में लिया हुआ और ये बोहोत ही हरा-भरा लग रहा और बोहोत ही खुबसूरत भी लग रहा और आलू के कैरेट वेरेट भी है।

और इधर भी टेल्स वगैरा लगा हुआ है और उधर देख सकते है चादर-उदर है प्लेन से है ये बोहोत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुबसूरत है और बढ़िया लग रहा है सुन्दर है।